यह हॉल है जिसमें शादी हॉल है इसमें जयमाल का लगा है और खिड़की लौउक रही है इसमें सारे तरफ से सजावट हुए है और चुकभुकिया ये सब सब लगाया हुआ है ।

ये पुराना हॉल है जिसपर विद्या कोचिंग सेंटर लिखा गया है और यहाँ पर ट्यूशन पढाया जाता है।

ये एक महल है जिसमें बहुत पुराना हो चुका है इसका लैट उड़ गया है और इस पर सब जंग लग गई है।

यह बहुत पुराना जैसे लगता है इसको रिपेयर भी नही करवाया गया --

छोटी मोटी बिल्डिंग भी बनायीं हुई हैं यहाँ पर बाल-बूल रखा गया है इधर पेड़-पौधे हैं और ये इधर कचरे वचरे भी हैं।